इस घर के में गेट भी है गेट के किनारे दो कोनें भी हैं इस कोने पर भी लाइट लगाया गया --

सफ़ेद कलर से पेंट किया गया है इस बरामदे के सामने ग्राउंड भी है यह ग्राउंड काफी सुन्दर है।

यह एक पहाड़ है यह पहाड़ काफी उची है इस पहाड़ पे अनेक सारे पत्थर भी --

ये घर है। यह घर काफी बड़ा है। इस घर मे अनेक सारे कमरे भी है।

यहाँ पर बहुत से टेबुल बिछाए गये हैं यहाँ पर काफी कुर्सी भी है यह टेबुल पर ग्लास एवं --

यह एक घर है यह घर में दो दुकान है एक दुकान में मुस --

इस मेले में बहुत से आदमी देखने आये होंगे यहाँ पर तरह-तरह के सामान भी होंगे।

बहुत से छोटे गाड़ी भी आते हैं यहाँ पर बहुत से आदमी भी आते --